ये किराने की शॉप है।

ये स्कूल नर्सरी टू टेंथ तक है।

चढ़ाए हुए हैं पीछे एक--

ये स्कूल में बच्चे एग्जिबिशन लगा रहे हैं।

इसके बाहर काफी ला लाइट्स लगी हुई हैं।

खड़े हैं टल के अंदर कुछ--

एक लड़की मिरर में अपनी सेल्फी ले रही है।

ये इलेक्ट्रॉनिक्स कि शॉप है।

इन बॉक्सेस में मोबाइल भी हैं।

इन बॉक्सेस का कलर ग्रीन ॲण्ड --